एक एचडीएफ़सी बैंक ए_टी_एम है। इस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले जाते है।

फ़ूड ट्रैक है यहां पर।

पर यह एन.जी.ओ कर के कुछ है यहां पर है लोग फाउंडेशन चला रहे हैं जो कि गरीब बच्चों के लिए है और यहां पर--

यहा पर नाई बाल काटते है। और वें अपनी बियर्ड को बहुत अच्छा बना देते है।